बिल्डिंग का कलर पीला कलर का है और एक बाइक लगा है जो बाइक पार्किंग करते हैं और यह घेरा गया है।

यह एक लाइब्रेरी है लाइब्रेरी में बोहोत सारे बुक्स रखे हुए हैं।

यहां ऊँची-ऊँची बिल्डिंग हैं।

रिक्शा की सहायता से यहां मछली लाया गया है।

क्या हुआ बादल भाइट कलर का दिख रहा है।

यहाँ एक मेला लगा हुआ है।

बैग टांगे हुए हैं।

कैसे गाय को बारिश और धुप से बचाया गया है।

लड़की कहाँ से है कुछ पहाड़ी जो है रेड कलर की पत्थर दिख रहे आसमान वाइट कलर के दिख रहे हैं ।

अ विभिन्न प्रकार के टी-शर्ट है जो खिलाड़ी अपने ड्रेस में पेहेन कर खेलते है।

अ हटाते हैं।

जिसमे बोहोत स्टाइल का सामान --